जिसने चेक शर्ट और काले कलर की पैंट पेन रखी है यहां पर बैठने के लिए कुछ सोफे और खुर्सियां रखी हुई है।

कुछ बाइक पार्क की हुई है।

और इस स्टैचू के बाहर कर चारों तरफ लोह की रेलिंग लगाई हुई है और यहां पर कुछ ऑटो रिक्शायें --

और एक है लाइट लगा रखी है और इसकी छत है ओ उसमें सीलिंग की हुई है और यहां --

और एक व्यक्ति यहां हाथ में मोबाइल है वो पैसे लेकर बाहर की ओर निकल रहा है एक व्यक्ति अंदर ए_टी_एम से पैसे निकल रहा है।

जिसने जींस पैंट और सिर्फ शर्ट पहन रखी है और एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है और एक व्यक्ति है जिसने ऑरें --

ये एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है और ऊपर छत में लाइट लगी हुई है और ये तो यहां लकड़ी के --

पौधे लगे हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

दीवार में झगमगा रही है और छत में लाइटें लगी हुई है।

मेज बनी हुई है जिसके एक तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हैं और एक यहां पर महिला खड़ी है।

कुछ देवी देवताओं की फोटो रखी हुई है और इसकी जो छत है वो रेड कलर की है और --

चिप्स के पैकेट टंगाए हुए हैं और एक यहां पर दीवार में कूलर लगाया हुआ है।

जिसके लोहे की रेलिंग लगी हुई है और वहां अंदर की ओर बड़े बड़े पेड़ है और बाहर की ओर छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं।